और इसके पीछे एक टावर है और इधर दूसरी साइड एक ब बड़ा सा पौधा इसके पीछे पेड़ लगा हुआ है।

यहां पर एक लोहे की रेलिंग जाली रेलिंग है और उसके पीछे सफेद बिल्डिंग है।

अलमारीयां लकड़ी के फर्नीचर्स हैं छोटे छोटे अलमारी बनी हुई है और इसमें स्पीकर मोबाइल फोन --

यहां पर एक झील या तालाब की फोटो है।

जिसका इसमें एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है और खिड़की में कांच लगा हुआ है उसके सामने एक लॉक का गेट भीं लगा हुआ है।

सफेद कलर की प्लेट है। इसके नीचे रेड कलर का कपड़ा बिछाया हुआ--

सफेद पंखे लगाए हुए हैं और यहां पर लकड़ी का फर्नीचर लगाके छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हुए हैं जिसमें बैठने के लिए व्यवस्था की गई है।

और यहां पर ब्लैक कलर की सोफेदार कुर्सियां बैठने के लिए लगी हुई है और दीवार में बड़े बड़े शीशे लगे हुए है सामने एक बड़ा सा गेट है।

ध्वजा एवं त्रिशूल लगी हुई है और मिंदर के मुख्य भाग पे करनी माता की फोटो लगी हुई है बाहर कर लोहे की रेलिंग लगी हुई है।

खेलने के लिए बनाई हुई है और इधर कुर्सियां लगाई हुई है जिनमें कुछ व्यक्ति बैठे हैं और यहां काफी सारी भीड़ इकट्ठी हो रखी है।

यहां पे एक दुकान है जिसके अंदर लकड़ी के फर्नीचर से छोटे छोटे बॉक्सस बनाए हुए हैं।

यहं ये एक रेलवे स्टेशन का फोटो है जिसमें एक ट्रेन आई हुई है प्लेटफार्म पे और इधर दो पटरी बनी हुई है।

और इसके सामने एक बड़ा सा पेड़ हैं और इसके पास में एक लैंप है जिसमें लाइटें लगीं हुईं हैं।